और यह गाड़ी पूरी तरह से खुली हुई हैं।

यहां पे काफी सुंदर बर्ड्स बैठी हुई है।

यह फैक्ट्री में सामने की तरफ एक मशीन भी पड़ी है।

यहां पे हिरनो के ऊपर काफी सारे सिंघ है।

यह एक ढाबे की तस्वीर है।

ये एक सामने की तरह--

काफी सारे लोग खाना बना रहे हैं।

यह एक भारत पेट्रोल पंप की गाड़ी है।

यहां पे एक पाइप लगा हुआ है।